कंप्यूटर है सी_पी_यू है फिर आईना है फिर --

और फिर एक ब्लू कलर कलर का मंदील जैसा दिख रहा है।

फिर कार्टून है फिर ब्लू कलर का फैन है फिर सीसीटी कैमरा भी है।

फिर गमला भी है फिर उधर गेट उट भी है फिर रास्ता भी तो है।

और फिर पेड़ भी है और फिर सीसीटीवी कैमरा भी दिख रहा और ऊपर-ऊपर लाइट भी है।